eclipse की programming विशेषताओं के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
eclipse की यूजर अनुकूल programming विशेषताएँ
इस tutorial में हम उपयोग कर रहे हैं उबंटु 110 jdk 16 और eclipse 370
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए
आपके system पर eclipse संस्थापित होना चाहिए
आपको पता होना चाहिए कि eclipse में एक साधारण java program कैसे लिखें
यदि नहीं तो संबंधित tutorial के लिए हमारी दिखाई गयी website पर जाएँ
eclipse ide बहुत सारी यूजर अनुकूल विशेषताओं का समर्थन करता है जैसे
auto completion syntax highlighting
एरर डायलॉग बॉक्स और शॉर्टकट कीज़ हम इन सभी विशेषताओं को विस्तार से देखेंगे
मैंने features named एक class बना दिया है और main method जोड दिया है
हम पहले eclipse में auto completion विशेषता देखेंगे
main method में एक opening brace type करें और enter करें
हम देख सकते हैं कि यह समरुपी closing brace स्वतः ही sets करता है और indentation के साथ cursor को रखता है
यह प्रत्येक विशेषता को पूरा करता है एक साथ काम करता है
उदाहरणस्वरुप parentheses open parentheses type करें
हम देख सकते हैं कि हमने केवल open parentheses type किया और eclipse ने स्वयं ही closing parentheses जोड दिया है
यह भी ध्यान दें कि यदि हम closing parenthesis type करने का अभ्यास करते हैं तो यह अतिरिक्त closing parenthesis न जुड़ने का भी ध्यान रखता है
अब मैं closing parenthesis टाइप कर रहा हूँ और ध्यान दें कि cursor केवल बाईं ओर moves होता है और अतिरिक्त parenthesis नहीं जुड़ता है
यह double quotes के साथ भी उसी तरह से कार्य करता है
opening quotes type करें और यह स्वतः ही quotes को closes कर देता है
यदि हम closing quotes type करने का अभ्यास भी कर रहे हैं यह अतिरिक्त quotes न जोडकर इसका ध्यान रखता है
मैं कोट्स टाइप करना जानता हूँ और देखता हूँ कि cursor दाईं ओर moves होता है किंतु कोई अतिरिक्त कोट्स नहीं जुड़ता है
auto completion एक बहुमुखी विशेषता है और code की संरचना को बनाए रखने में काफी मदद करता है
और typing errors से भी बचाता है जैसे closing braces भूलना closing पैरेनथीसेस भूलना और closing quotes भूलना
अगली programming विशेषता जिसे हम देखेंगे वह suggestion सजेशन है
उन सभी को हटाएँ जिसे हमने टाइप किया है
हम शब्द hello को print करने के लिए output statement type करेंगे system dot
ध्यान दें कि eclipse drop down सूची प्रदर्शित करता है
सूची में सुझाव होते हैं जैसे err in out console समाप्ति की सभी संभवताएँ
out पर scroll down करें और enter दबाएँ फिर से dot type करें
अब eclipse out module से सुझाव प्रदान करेगा
println पर scroll down करें और enter दबाएँ अब paranthesis के अंदर quotes में hello type करें
अगली विशेषताएँ जिसे हम देखेंगे वह है syntax highlighting विशेषता
ध्यान दें कि कीवर्ड public class public static void सभी भिन्न रंग में है
और यह भी ध्यान दें कि hello शब्द नीले रंग में है जो दर्शा रहा है कि यह string है
यह syntax highlighting विशेषता हमें कीवर्डस और code के भिन्न भागों के मध्य अंतर जानने में मदद करती है
eclipse भी programmer को errors ज्ञात करने में मदद करता है
program में error बाईं margin पर red cross चिन्ह द्वारा दर्शाया जाती है
इस program में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक error है और mouse error पर घूमता है
हम देख सकते हैं कि error दर्शाती हैः semiकॉलन नहीं है और error को ठीक करने के लिए समाधान दिखाया गया है
यदि हम error को फिक्स किये बिना रन करते हैं तो right click करें run as java application चुनें
हमें एक error dialog box दिखता है जो दर्शाता है कि यहाँ एक error है जो आगे बढ़ने और न बढ़ने के लिए पूछता है
अभी के लिए आगे बढें हम देखते हैं कि यहाँ output दर्शा रहा है कि यहाँ एक error है और
जब हम problems console पर जाते हैं सभी problems संभव समाधान के साथ सूचीबद्ध होते हैं
अतः semicolon जोड़कर error को हल करें so करने के लिए ctrl s दबाएँ
eclipse की अगली programmer अनुकूल विशेषता shortcut कीज़ है
किसी भी program में सामान्य shortcut कीज़ सेव करने के लिए ctrl + s और ओपन करने के लिए ctrl + o हैं
eclipse में इस तरह के कई सामान्य उपयोगित functions के लिए shortcut कीज़ हैं
control f11 code को रन करने के लिए shortcut है
अब इसका अभ्यास करें ctrl को पकड कर रखें और f11 दबाएँ तथा हम देखते हैं कि code रन होता है और output hello printed होता है
अन्य options के लिए shortcut कीज़ menu में जाकर पता की जा सकती हैं run पर click करें
और ध्यान दें कि option के right में यहाँ shortcut दिया गया है
अतः debug के लिए shortcut की f11 है
यह eclipse की programming विशेषताओं की एक छोटी किंतु अधिकतर उपयोगित सूची है हम अधिक विशेषताओं के बारे में आने वाले tutorials में सीखेंगे
इसी के साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर as गये हैं इस tutorial में हमने सीखा कि eclipse की programming विशेषताओं का उपयोग कैसे करें जैसे
ऑटो कम्प्लीशनसिंटेक्स हाइलाइटिंग एरर डायलॉग बॉक्स और
शॉर्टकट कीज़
एक नियत कार्य के रुप में
class के साथ एक सामान्य program लिखें जो hello prints करे
साथ ही eclipse की सभी programming विशेषताओं को लागू करें
इसके functions पर ध्यान दें
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
निम्न link पर उपलब्ध video देखें
यह project को सारांशित करता है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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध हैspoken hyphen tutorial dot org slash nmeict hyphen intro
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद